एक मंदिर है जिसको फूलोंसे भरा सजाया है बहुत लोग है दर्शन करने आए है एक आदमी मोबाइल लेके विडियो बना रहा है।

एक बस स्टेशन है जहा पे सफ़ेद कलर की बस सिखाई दे रही है वह पे लोग जमा है आधे लोग अंदर जा रहे है आधे लोग बाहर आ रहे --